और यहां पे गुब्बारे लगे हुए हैं लाल और सफेद रंग के और यहां पे आप देख सकते हो मेज भी है कुर्सी भी है।

और यहां पे शूज भी रखे हुए हैं यहां पे आप देख सकते हैं शूज हर तरह के रंग के शूज रखे हुए हैं।

ला चारों तरफ लाइटें लाइट दिख रही हैं और आदमीयों की बहुत लंबी लाइन है।

यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारी लाइटें लाइट है और यहां पे--

और यहां पे आप दे शैंपो रख्या हुआ क्लिनिक शैंपू दिख रहा है यहां पे यहां पे आइसक्रीम के लिए बर्फ रखी हुई है।

एक ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए एक ने ब्ल्यू --

यहां पे लाइट का छाबर बंधा है और यहां पे बैठने की भी सीट है।

और यहां पे बहोत सारी भीड़ है और यहां ये आदमी साइकल पे खड़ा है आप देख सकते हो साइकल चला रहा है।

बहुत अच्छा चल रही है यहां पे हेल्थ गाड़ी लगा रखा हुआ है या तेल है और यहां पे गिलास भी रखे हुए हैं देख सकते हैं।

यहां पे आप देख सकते हो ये सब्जियां रखी हुई है ये बंद गोभी है यहां पे रखे हुए हैं टमाटर रखे हुए हैं।

और यहां पर आप देख सकते हो चारों तरफ पेड़ पौधे पेड़ लगे हुए हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है।

मोटा पतला होने के लिए एक्सरसाइज की जाती है और यहा आप देख सकते हो --

और देखने में बहोत अच्छा लग रहा शाम का टेम है और यहां पे देख सकते हो आप ये हरी घास लगी हुई है।

यहां पे एक औरत खड़ी हुई है यहां गाड़ी खड़ी हुई है ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और यहां ये होटल है डेयरी --

ग्रीन कलर के है और यहां पे भी लगे हुए है और यहां पे लाइटों का प्रबंध है और ये बहोत सारे आर्मी यहा पे--